कोई एक गांव का एरिया है और यह किसी मकान के ऊपर से ली गई फोटो है।

यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है पहाड़ों के पास में जो पानी पी रहा है और उसके पीछे काफी ऊंचे पहाड़ दिख रहा --

जिसमें एक टी_वी लगी हुईं हैं और दीवार में कुछ पोस्टर लगे हुएं हैं और एक कोने में सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगा हुआ भी दिख रहा है।

दीवार में जो खिड़कियां हैं उनपे परदे लगे हुए और नीच में हरे कलर की दरी भी बिछाई गई है।

बोर्ड खड़ा किया हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है और इस बोर्ड के आगे एक पानी का कैंपर रखा हुआ दिख रहा है।

सामने दिख रहा है कि यहां पर कोई लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी --

कुछ लोग हैं जो नमाज पढ़ने के लिए आए हुएं हैं।

सामने दिख रहा है कि यह कोई कपड़ों की दुकान है जिसके अलमारियों में अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं।

की गैलरी है और इस गैलरी से सामने की बिल्डिंग की फोटो ली गई हुई है और --

जिम कर रहे है और दो लोग आपस मे सेल्फी ले रहे है और उधर कुछ लोग जिम कर रहे है।

सामने दिख रहा है कि यहां पर कुछ पहाड़ है।

सारी मात्रा में भीड़ दिख रही है काफी ज्यादा लोग दिख रहे है और इसमें से एक टेंपो भी दिख रहा है।

सामने दिखाई दे रहा है कि यह एक कोई होटल है और इस होटल के आगे नाम लिखा हुआ है मा --

और इस बिल्डिंग में जाने का रास्ता दिख रहा है कि एक लड़का वहां इस बिल्डिंग में से निकाल कर जा रहा है।

सामने दिखाई दे रहा है कि यहां पर कोई होटल है और होटल के आगे मेजें लगी हुई है और मेजों के --